मुझे यहां पे बहोत सारे छोटी छोटी घास और आस पास झाड़ियां नजर आ रही हैं मुझे कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं जिनकी खिड़कियां और शीशे मुझे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे मुझे कुछ झूले भी नजर आ रहे हैं।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

ज्यादा बच्चे पानी की बॉटल और गिलास और स्पून भी नजर आ रहे हैं।

लाइट सब जली हुई दिखाई दे रही है यहां पर शीशे का दरवाजा और खिड़कियां नजर आ रही है।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

बिल्डिंग के नीचे बहोत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है।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

और मुझे कुछ फूल भी यहां पे नजर आ रहे हैं यहां पे मुझे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।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

गैस और बड़े बड़े पतीले नजर आ रहे हैं।

गैस के ऊपर मुझे एक कुकर भी नजर आ रहा है।

मुझे ये दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत सारा कलर बोर्ड --

हॉल नज़र आ रहा है यहां पे मुझे एक येलो कलर की मैट और एक बॉटल और कुछ बैग नज़र आ रहे हैं मुझे यहां पे कुछ चेयर्स भी नज़र आ रही है जिनपे लोग बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बैग --